ये कोई मंदिर है। यहाँ पे लोग पूजा करने जा रहे हैं। यहाँ पे पकवान लोगो की भी बनी हुई है।

और स्कूल टाइप का लग रहा है स्कूल या फिर कॉलेज है ये।

ये कोई नदी वगैरह है वहां पे कोई बच्चे नहा रहे हैं साइड साइड में पेड़ लगा हुआ है ऐसे जिगजैग करके जा रहा है.

यहाँ पे बहोत सारे बाइक स्कूटी ये सब खड़े हुए हैं और कई लोग खड़े हुए हैं।

और यहाँ पे इन लोगो के रिलेशन का ऐसे फ्लैग वगैरह लगा हुआ है।